ये कई सारी लाइट भी लगी हुई--

इसमें बोर्ड भी लगे हुएं हैं।

ओ इलमारी भी लगी हुई हैं।

व्हाइट पीले पर्दे भी लगे हुए हैं।

इसमें एक व्हाइट कलर की स्कूटी भी है।

दो सिलेंडर भी हैं। ऊपर कुछ --

इस तस्वीर में एक गाड़ी धुलने वाली दुकान --

शिवलिंग शंकर भगवान की बनी हुई है।

एक नमः शिवाय भी टंगा हुआ है।

और वीडियो बना रहे हैं।

एक पेड़ के ऊपर झंडा लहेरा रहा है।

आदमी उस ओर देख रहा है।

तस्वीर में एक गार्डन बना हुआ है।

ऊपर एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

वो तलाब में नहा रहा है।

दो आदमी नहला रहे हैं।

कई आदमी भी खड़े हुए हैं।

कई औरतें बैठी हुई हैं।

इस तस्वीर में एक सड़क पे दो ऑटो खड़े हुए हैं।

यम करने वाले चार लाइटे भी लगी हुई हैं।

इसमें बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं।

वहां उसके ऊपर टेंट भी लगा हुआ है।

बहोत तेज पानी बरसा है।

वहां बस भी फस चुकी है।

वहां हरे पेड़ भी हैं।

बहोत सुन्दर लग रहा है।

एक पंखा भी लगा हुआ है।